अं जैसा की आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं--

बैठे हुए हैं और अपना कार्यक्रम प्रदर्शित कर रहे हैं।

और इस नदी में एक बहोत बड़ी नाव है।

यह सब्जी मंडी है और यहां पे लोग सब्जियां लेने आते हैं।

और शाम पे टाइम है और एक आदमी यहां बैठा हुआ है।

ये यह एक वर्कआउट यानी व्याम करने की एक जगह है।

अ जैसा की आप इस पिक्चर में देख सकते हैं।